और एक पर्पल कलर का तौलिया भी पड़ा हुआ है।

सामने देखिए यहां पर बहुत सारी करेंनें दिखाई दे रही हैं।

यहां सामने देखिए ये एक नीलम अग्रवाल है।

दीवार पे छोटे छोटे कार्टून भी छपे हुए हैं।

और पीछे ब्लैक कलर का एक बैग भी धरा हुआ है।

नीचे रेड़ी लगी हुई है फूलों का स्टॉक --

पेड़ की झाड़ियां भी हैं।

बहोत अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है यहां पर--

एक पेंटिंग में बर्गर दिखाई दे रहा है।

दीवार पे राजाओं महाराजाओं जैसी बहोत पुरानी बहोत ही पेहली महारानियां है।

कुछ रेड रंग की है टाइले के ऊपर हेलमेट भी रखा हुआ है।

उस पर सेंटर आर सी टेक्निकल ट्रेस इंस्टीट्यूट आई_टी_आई लिखा हुआ है।

बहोत सारे लोग बच्चे हैं।

यहां पर एक कार खड़ी हुई है व्हाइट कलर की उसका नम्बर प्लेट यू के तेरहा टी ए फोर नाइन फाइव ज़ीरो है।